केक देखिये केक । वाह भाई वाह कित्ते बढ़िया बढ़िया केक हैं। एक पे हैप्पी बर हैप्पी लिखा हुआ है।

बहोत लम्बी लाइन में कुर्सियां पड़ी हैं। कुर्सियां भी काफी बड़ी हैं। काफी सारी है। टेंट भी ऊँचे पे लगाया गया है जहाँ पर जयमाला का प्रोग्राम होगा।